जब यहां पर आम पकते हैं तो हमें आ स्वादिष्ट आम खाने को मिलते हैं। इन्हीं बागों से हमें आम प्राप्त होते हैं।

इस में कुछ खाने का सामान है कुछ टेसनरी का सामान है कुछ डाल चावल तेल के बोर्ड लगे हुए हैं| जिन व्यक्ति को जो --